आसमान बिल्कुल साफ है जैसे कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी और एक पौधा है।

ब्लू है उसके बगल में एक पेड़ भी है और साइड में एक साइकिल खड़ी है स्कूल का गेट साफ-साफ दिख रहा है स्कूल का नाम --

ये किसी कपड़ों की दुकान है बहुत सारे कपड़े लटक रहे हैं जिसमें कि शर्ट पैंट वगैरह दिख रहे हैंफ़ोन पे का कैशबैक का एक--

और यहां पे टिकट काउंटर है सामने और यहां पे चेकिंग काउंटर भी है बगल में आप लोग मोबाइल फोन के टिकट को--

वाउचर वाली टिकट में पेपर वाले में करवा सकते हैं और पार्किंग भी यहां पे फ्री है काफी अच्छा है।

और उनके साइड में एक मैडम खड़ी हैं साथ में एक बच्चा खड़ा है काउंटर पे एक बंदा किसी तरफ इशारा करके कुछ दिखा रहा है।

रेस्टोरेंट की फोटो है वैष्णु अमृतसर इन्नान का बोर्ड लगा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है--

गाड़ियां पता नहीं कब निकलेगी कुछ कह नहीं सकते लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक है।

और एक पोल लगा हुआ है जिसमें शायद लाइट है और कुछ बंदे साइड में बैठे हुए हैं कुछ खड़े भी हैं काफी सुंदर नजारा है।

पार्टी की ल अ थीम है ऊपर बहोत सारी सुंदर लाइटें लगी हुई हैं एक बच्चा है उसके साथ में एक और बच्ची है।

सामने ऑरेंज टी-शर्ट में खड़े शायद मास्टर जी है जो कि उन्हें पढ़ा रहे हैं।

मंदिर का दृश्य है ऊपर सफेद रंग का बल्ब है एक आंटी जी भी मोहतरमा खड़ी हैं।

ऑस्ट्रेलिया से बुलाए गए हैं ऐसा बोर्ड लगा हुआ है बेकर्स नाम से एक लोगो बनाया हुआ है।

लोगो बनाया गया है कुर्सियां भी रखी हुई हैं गेट बिल्कुल बंद है कुछ सफेद रंग की पर्चियां भी चिपकाई हुई है।

शैंपू तेल आटा चावल दाल नमकीन--

ये कोई चर्च है ऊपर गुब्बारे लगे हुए हैं रंग बिरंगे गुलाबी रंग के गुब्बारे हैं सफेद गुब्बारे हैं नीले गुब्बारे हैं।

एक बच्ची बैठी हुई है चर्च पे क्रॉस का साइन है कोने में एक बंदा बैठ के ढोल बजा रहा है खुस --

इमारतें हैं बहुत सारे छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं एक दो तीन चार पाच छह गमले रखे हुए हैं।

और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस लिखा हुआ है।

और वाहन पे बना कर रखा है।

ये किसी क्लास है जैसा मास्टर रेड टी शर्ट में--